सामने एक पोल गड़े हुए हैं।

स्टेज के पीछे एक बड़ा सा पहाड़ सा है जिसको बनाया गया--

यह एक रेस्टोरेंट है जहां बहोत सारे डाइनिंग टेबल और कुर्सी लगे हुए हैं।

बहोत सारे लोग मछली को बेचने का कार्य कर रहे हैं।